java संस्थापन के साथ शुरूआत पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
synaptic package manager का उपयोग करके jdk संस्थापित करना
java क्यों java के applications और प्रकार
यहाँ हम
उबंटु version 1110 और
java development environment jdk 16 का उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपका internet से जुड़ा होना आवश्यक है
package system पर synaptic package manager संस्थापित होना चाहिए
आपको लिनक्स में terminal terminal text editor text editor और synaptic package manager का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं है तो कृपया spokentutorial org पर उपलब्ध लिनक्स पर spoken tutorial देखें
java program रन करने के लिए हमें jdk java development kit संस्थापित करने की आवश्यकता है
jdk के बारे में अधिक जानने के लिए आप निम्न link पर जा सकते हैं
अब हम synaptic package manager का उपयोग करके jdk संस्थापित करेंगे
इसके लिए आपको root permissions की आवश्यकता है
आपको repository चुनने की आवश्यकता भी है
ये लिनक्स पर पूर्वापेक्षा tutorial में पहले से ही बताए गए हैं
अब आपके desktop के बाएँ कोने पर आप taskbar देखेंगे
सबसे ऊपर आप dashhome देखेंगे
dashhome पर click करें
search bar में synaptic type करें
आप यहाँ synaptic package manager पायेंगे
synaptic package manager पर click करें
authentication के लिए आपको आपके password को type करने के लिए कहा जायेगा
अतः अपना password type करें और authenticate पर click करें
यह synaptic package manager खोलता है
अब quick filter box में jdk type करें
हम एक openjdk6jdk named package देखते हैं
इस पर दायाँclick करें और mark for installation पर click करें
apply पर click करें
आपको चयनित बदलावों की सूची निश्चित करने के लिए कहा जायेगा
अतः to be installed पर click करें और फिर apply पर click करें
संस्थापन कुछ सेकैंड लेगा
अब हम देखते हैं कि option openjdk6jdk हरे रंग में है
अतः हमारा संस्थापन पूर्ण हो गया है
अब संस्थापन को सत्यापित करें इसके लिए ctrl alt और t कीज़ को एक साथ दबाकर terminal खोलें
मेरा terminal पहले से ही खुला है
command prompt में java space hyphen version type करें और enter दबाएँ
हम देखते हैं कि jdk की version संख्या प्रदर्शित होती है
विवरण के आधार पर आपका उपयोगित version number भिन्न हो सकता है
अतः हमने jdk को कुशलतापूर्वक संस्थापित कर दिया है
अब एक सामान्य java program now करें और देखें क्या यह कार्य करता है
मैंने testprogram dot java नामक file में पहले से ही निम्न code सेव किया है
अब मैं कंपाइल करता हूँ और इस code को now करता हूँ
यह code स्पष्ट प्रदर्शित करता है we have successfully run a java program on the terminal
अतः वापस terminal पर जाएँ
ध्यान रखें कि मैंने testprogram dot java file home directory में सेव की है
और अभी मैं home directory में हूँ
अतः command prompt पर type करें javac space testprogram dot java
यह code को कंपाइल करने के लिए है
enter दबाएँ
अब मैं code now करता हूँ
अतः type करें java space testprogram और enter दबाएँ
हमें output मिलता है we have successfully run a java program
इस प्रकार हमारा संस्थापन सही हो गया है
अब slides पर वापस जाएँ
मैं अब समझाऊँगा कि java उपयोगी क्यों है
java सरल है
java वस्तुनिष्ठ object oriented है
यह स्वतंत्र मंच है
यह सुरक्षित है
java में उच्च निष्पादन हैं
java मल्टिथ्रेडेड है
हम अब java के कुछ प्रकार और applications देखेंगे
jsp या java server pages: यह सामान्य html tags के साथ code पर आधारित है
jsp सक्रिय वेबपेजेस बनाने में मदद करता है
java applets: यह web applications को संवादात्मक विशेषताएँ प्रदान करता है
j2ee या java enterprise edition: companies j2ee का उपयोग करती हैं
यह xml संरचित documents को स्थानांतरण करने के लिए उपयोगी है
javabeans: javabeans एक दुबारा उपयोग योग्य सॉफ्टवेयर घटक है
इसका उपयोग नई और advanced applications बनाने के लिए किया जा सकता है
mobile java: यह कई मंनोरजन के डिवाइसेस के लिए उपयोगित है जैसे mobile phone
अतः इस tutorial में हमने सीखा
synaptic पेकैज manager का उपयोग करके jdk संस्थापित करना
java program कंपाइल करना और रन करना
java उपयोग के लाभ
java के प्रकार और applications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
spoken tutorial project team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
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवॉन द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद